यहां पे एक ही कलर थीम को फॉलो किया गया है बेज एंड मरून जो कि काफी सुंदर है साथ ही साथ यहां एक लग्जरी कार पार्क है जो शायद एक फैमिली कार है।

ये पत्थरों से बनी हुई बहुत ही खूबसूरत--

अच्छा तरीके से मेलजोल बिठाया है और इस फोटो को बहुत सुंदर तरीके से खींचा है।

हॉस्टल या फिर एक कॉलेज है जिसका नाम एमईटी इंटरनेशनल है बट पूरा नाम इस फोटो में देखा नहीं जा सकता।

यह फोटो लगभग रात के समय की लगती है जहां पर सामने एक बैंगला पेस्ट्री शॉप देखी जा सकती है ।

इस इमेज में हमें रोड पर बनी एक दुकान की फोटो देखी जा सकती है।

जहां पर कई तरह के अलग-अलग साइन बोर्ड लगे हैं ऊपर एक ओनिडा का साइन बोर्ड है।

इस इमेज में देखा जा सकता है ये कोई पार्टी का सीन चल रहा है और--

इस तरह के बिल्डिंगे नॉएडा या गुड़गांव में देखी जा सकती है।

और उसके साथ में आसपास कुछ पेड़ हैं और --

शायद यह इसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं और वही ढूंढ रहे हैं आज --

और इन सभी बच्चों ने एक ही तरह के कपड़े पहने हुए हैं जो पीले और सफेद कलर के--

साथ ही साथ यहां पर सामने देखा जा सकता है कि दूध निकालने वाली एक मशीन भी है जहां पर आप--

ये फोटो किसी पार्क की लगती है क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा हरियाली है पेड़-पौधे और बहुत ही सुंदर--

साथ ही साथ इन्हें झाड़ वाले फूल भी कहा जाता है जो की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं।

जो कि तिब्बत या फिर सिक्किम में देखा जाता है।

इस फोटो में एक बस को देखा जा सकता है जो कि एक गवर्नमेंट वेहीकल है।

ए_जी_सी वो एल्वो बस भी लिखा हुआ है इस तरह की बस ज्यादातर डबल-सीटर होती है जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी होती है।

अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट ड्राइंग या कुछ क्राफ्ट और आर्ट ही कर रहे हैं।

इस फोटो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है यह एक इंस्टिट्यूट की फोटो है जहां बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं।

इस फोटो में थ्री स्कूप वाली आइसक्रीम को देखा जा सकता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस हो सकती है।